समझा रहे है और प्यार बाॅट रहे है।

ऊपर टी-शर्ट हैं। जहाँ कई सारे रंग के --

और इसके बाहर एक गमला रखा है।

और इस पे हल्का चोकलाेटी रंग भी है।

यह एक चर्च है जो गॉड फादर के साथ --

येलो कलर की व्हाइट कलर की --

जो पिंक कलर की है जो फोटो खींचा रहे हैं।